वो नेवी ब्लू में है एंड एक लड़की जाते हुए नजर आ रही है इस चित्र में और ये फोर स्टोरी बिल्डिंग है।

यहाँ हमें देखंगे तो टू स्ट्रैट मॉल देखने को मिल रहे हैं छोटे -छोटे स्टॉल हैं दो वहां और लाय्टिंग बहुत अच्छी हुई हैं अ ब्लू और रेड लाईट भी देखने को मिल रहे हैं।

हम यहाँ देखंगे तो इस चित्र में इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस लिखा हुआ है। मेडिकल साइंस की डिपार्टमेंट इंस्टिट्यूट है उसके गेट्स दिखाई दे रहे हैं। दो चार आदमी अन्दर जा रहे हैं।

यह भी एक मॉल नजर आ रही है। एक डेकोरेशन वगैरह कर चुके हैं। मेय बी एक अकैशन होगा। माय मोबाइल कर के एक शोरुम भी देखने को मिल रहे हैं। एक लड़का --

एक औरत की मूर्ति जैसा दिखाई दे रही है एंड बोनस वगैरह भी अ दिखाई दे रही है सबसे पढ़ाइ होती है।